और ग्रिल लगा हुआ है जो कि ब्लू रंग में है | सामने पुली बनी हुई | हरे हरे घास हैं और ये घर के पीछे भी बिल्डिंग है |

और ये जमीन है वो मट्टी वाली है और रंग की बड़े बड़े ईट से इसे बनाया गया है जिसपे छोटी छोटी हरी हरी घासे भी उग आई है |